यहाँ पे एक काउंटर पे तीन ल-जन खड़े है और एक काउंटर पे एक बूढी औरत खड़ी है उसके पास में दो लड़के और एक लड़की खड़ी है यहाँ पे चार काउंटर बनाए गए हैं।

ये आदमी एक पुरानी गुफा के सामने अपनी तस्वीर खीच रहा है | इस आदमी ने आँख में चश्मा लगाया और जैकेट पहना है।

मछली का फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी मछली काटा जा रहा यहाँ पे दो आदमी मिलकर मछली काट रहा एक आदमी एक बड़े से मछली का खाल ये कर रहे है यहाँ पे बहुत सारी मछली गिरि हुई है यहाँ पे बहोत --

यहाँ पर दो आदमी हैं जो कार को सफा कर रहे हैं | एक आदमी कर को कार के चके को सफा कर रहा है तथा दूसरा गाड़ी के गेट को सफा कर रहा है |

यहाँ पे दोनों की शादी पूरी हो जाने से दोनों के घरों दोनों के घरों घरवालों ने अपने अपने हाथ में किताब अपने हाथ में लिया और पादरी पीछे से मंत्र पढ़ रहा है। उस --

यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है जो ऊपर में ब्लैक कलर का एक टी-शर्ट पहनी है नीचे एक ब्लैक कलर की लेग्गिंग्स और ऊपर से एक रेड कलर की नेट की स्कर्ट पहनी है।